बोरा है प्लास्टिक का बोरा है मॉल है शॉपिंग का बास्केट है।

क्रीम कलर का टेबल है इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है ब्लैक कलर का हेयर है फोन है रेड कलर का कैंची है कैलकुलेटर है लैप--

एग सीरी है पिंक कलर का डोर है ब्लू कलर का विंडो है उसपे ब्राउन कलर का लाइनिंग है पेर है।

एक दुकान है जिसमें येलो कलर का झूला है पिंक कलर का पूरा दुकान है इसमें छोटे छोटे फ्लेक्स है। बहोत सारे एल्युमिनियम के डोर से ब्राउन कलर का ड्राॅवर है।

एक जिम है जिसमें ब्लैक कलर के जिम वेयर्स नीचे--

व्हाइट कलर का टेबल है एक स्टेज बना हुआ नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट है।

व्हाइट टी शर्ट पहने हुए एक ब्लू टी शर्ट पहने हुए बहोत लोग चल रहे बड़े बड़े पेड़ है बहोत सारी हरियाली है कुछ लोग चल--

पेड़ है जो पिंक कलर का उसमें फ्लावर है वाई कलर के शोपीस है रेड कलर का एक क्रिसमस है पीछे जो वॉल है वो जो रेड कलर का है।

बिल्डिंग है अ ऑर रेड कलर का उसमें पोज बने हुए पानी का बॉटल है जो व्हाइट कलर का है ब्लू कलर का उसका ढक्कन है बहोत सरे मिठाई हैं मिठाई का बॉक्स रेड कलर --

ऊपर वो सीलिंग है जो व्हाइट कलर का है व्हाइट कलर का ट्यूबलाइट्स हैं।

एक सैलोन है जिसमें ब्लैक कलर का चेयर है एक इंसान खड़ा है जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ हैं ब्राउन कलर का टेबल है उसमें--

पिंक है ब्ल्यू है नीचे ग्रे कलर का टाइल्स है।